ये एक मकान है और यहां पे काफी सारी।

रेलिंग लगी हुई हैं और बाहर काफी सारे पोस्टर लगे हुए हैं साइड में ही एक मकान है जहां कुछ लोग खड़े हुए हैं।

और ऊपर काफी सारी जिम मशीनें रखी हुई हैं और बैलून से खूबसूरत डेकोरेशन किया गया है।

सामने ही कुछ बॉक्सेस नजर आ रहे हैं।

काफी सादी मात्रा में और पलंगों पर कोई मरीज नहीं है आप देख सकते हैं।

छोटा सा पार्क बनाया गया जिसमें काफी सारी मात्रा में--

और काफी सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं।

यह सामने एक कार पड़ी हुई है जो कि रस्सी से बांध के लटका के रखी है।

यह एक किराने की दुकान है जिसमें आप देख सकते हैं ।

ये एक काफी बड़ा मकान है जिसमें काफी बड़ा गेट लगा हुआ है जिसमें छोटा सा भी दरवाजा बना हुआ है वो कि खुला है।

और एक जेंट्स अंदर जा रहा हुआ है जो कि गेट खुला हुआ है।

और साइड में कुछ काफी सारे पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं।

यह एक काफी बड़ा हॉल है और जिसमें आप देख सकते हैं कुछ कुर्सियाँ टेबल लगी हुई हैं।

आप देख सकते हैं ये एक काफी बड़ा हॉल है जिसमें काफी खूबसूरत डेकोरेशन किया गया बैलून का--

और बीच-बीच में झूमर लगी हुई है जैसे कि बर्थडे का डेकोरेशन और काफी सारी मात्रा में कुर्सियाँ टेबल लगी हुई हैं।

और कुछ लोग कुछ काम कर रहे हैं और काफी बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं।

और साइड में ये क्रिस्टल लाइट लगी हुई है।

पेड़ पौधे लगे हुए वहीं पे एक टीन सेट बना हुआ है जिसके नीचे काफी सुंदर कुर्सियां लगाई गई है बैठने की व्यवस्था है।

डेकोरेशन किया गया लाइटों से गजरों से फूल मालाओं से।

यह एक बड़ा सा ऑफिस है पी थ्री के नाम से।

और बीच में काउंटर पे एक कंप्यूटर रखा हुआ है।

दोनों तरफ कैमरे भी लगे हुए हैं एक ब्लैक कलर का पंखा लगा हुआ है।

और सामने काफी सारे मकान नजर आ रहा है और बीच में खेत भी नजर आ रहा है।

और काफी सारी गाड़ियाँ साइडों में पार्क है उनमें हेलमेट रखे हुए हैं।

सभी प्रकार के पाना पेचकस रखे हुए दीवाल पे एक काफी सारी तस्वीरें भी लगी हुई हैं।

काफी सारे झूले भी लगे हुए है बच्चों को झूलने के लिए।

यह एक बड़ा सा मंदिर है साईं बाबा का।

यह सामने एक बड़ी सी दुकान है जिसका बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है।

और अंदर ही काफी सारी लाइटिंग लगी हुई है हॉल में लगाच में से नजर आ रही है।

ये एक बड़ा सा दरवाजा बना हुआ है जिस पे ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है।

और कुछ डमीन को टी-शर्ट लोबर वगैरह बनयान छड्डे वगैरह पहना के रखा हुआ है।

और यहीं पे को अ नॉनवेज की दुकान है जोकि--